घर ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसके सामने की तरफ से टीन से बना हुआ एक घर दिख रहा है जिसके बाहर साइड मे फोरव्हीलर खड़ी हुई है। एक खंभा दिख रहा है। सामने की तरफ से काफी लंबा तार भी दिख रहा हैं। और भी--

चलती हुई रोड दिखाई पड़ रही इस रोड पे काफी सारे कलरफुल कपड़े पहने हुए कुछ आदमी और बच्चे जाते हुए दिखाई पड़ रहे है।

इस रोड के किनारे एक आदमी टोपी लगा करके और हाफ लोअर पहन करके जाता हुआ दिख रहा है और रेलिंग भी है काफी दूर से कुछ मकान या खंभे और तार भी दिखाई पड़ रहे है।

एक पेट्रोल टेंक की है और रात का समय है एक आदमी खड़ा हुआ है एक सामने की तरफ एक बच्चा खड़ा हुआ है ऑफिस के बाहर कुछ चेयर पड़ी हुई है।